बड़ा सा जिम बना हुआ है।

ये एक बड़े से ब्रिज की पिक्चर है।

ब्रिज पर कुछ गाड़ियां चल रही हैं।

बाहर की तरफ बैठा है।

ज्ञानी नाम से रेस्टोरेंट बना है।

बहुत सारे फ्रूट्स रखे हैं।